हॉल में हमे कुछ डिज़ाइने दिखाई दे रही है नीचे हमे मिट्टी की सतह दिखाई दे रही है इसके बगल में हमे कुछ घाँस भुस दिखाई दे रहे है।

इसमें हमें बड़ा पेड़ दिखाई दे रहा है पीछे हमें एक घर दिखाई दे रहा है जिसमें कुछ डिजाइन बनाई गई है उपर एक गुंबज है जिसके आसपास हमें बड़े बड़े पिल्लर्स भी दिखाई दे रहे है सामने से पेवर ब्लॉक रास्ता दिखाई दे रहा है।

इस एक बोर्ड लगा हुआ है जोकि यहाँ पे स्वास्थ्य सामुदायिक केन्द्र का बोर्ड लगा हुआ है आसपास हमें कुछ बड़े पिलर्स दिखाई दे रहे है कुछ गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं।